बिल्डिंग के नीचे में कुछ सेटर भी लगाए गए हैं।

छोटे पौधे लगाए हुए है ।

यहां पर कुछ पोस्टर भी लगाया गया है।

उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा भी रखा गया है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का दृश्य है।

यहां पर कुछ गमला में पेड़ लगाए गए हैं।

यहां पर ब्राउन कलर से कुछ लकड़ी का नजर आ रहा है ।

ईहां पर एक कोंटर भी रखा हुआ है।

यहां पर बोर्ड में कुछ भी लिखा गया है।

यहां पर कुछ स्लाइडर भी लगाए गए हैं।

यहां पर कुछ ऑरेंज कलर का पाइप भी लगाए गए हैं।

यहां तीन स्कूटी भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर खिड़कियां भी नजर आ रहे हैं।

सामने में एक फ्रिज भी ल --

यह एक लैब क्लास का दृश्य है यहां पर एक पंखे भी नजर आ रहे हैं ।

यहां पर बहुत सारे चेयर भी रखे हुए हैं।

यहां पर शीशे भी लगे हुए।

ऊपर एक पंखे भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर कुछ हॉर्लिक्स भी रखे हुए हैं।